यह एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसमे दो टीमो के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा हैं। बल्लेबाज बैटिंग के लिए तैय्यार है।

--और येलो कलर पिंक कलर ब्लू कलर के बलूंस का प्रयोग किया गया हैं।

और इसमे महिलाओं का इलार्ज किया जाता है महिलाओं के अलावा पुरुषों को आने की अनुमति नहीं है।

ये एक कमरा है। कमरे में बेड है चेयर है परदे हैं ऐसी है पर्दो का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ।